और जिसके चारो तरफ पीछे पेड़ लगे हुए है हरी-हरी घास है और जहाँ प्रतिमा बनी है वहाँ पर ईटो --

ये एक रात के टाइम का पिक है जहाँ पर दो गाड़ियां खड़ी है एक व्हाइट कलर की एक ग्रे कलर की।

मंदिर के चारों तरफ घर बने हुए है और एक दो पेड़ भी लगे हुए है मंदिर के साइड मे एक छोटा सा पौधा लगा है मंदिर के अंदर एक मु मूर्ति--

यह एक ब्लैक एंड वाइट पिक है।

और ए.टी.एम. के बाहर शीशे का दरवाजा लगा हुआ है और कुछ एंगल्स लोहे के रखे हुए है रेड कलर की दीवाल है।

एक रोड व्यू है जहाँ पर आसमान में काली घटा है और यहाँ पे एक येलो ब्लैक कलर ऑटो जा रहा है जिस के पीछे वाइट कलर की कार है।

और बीच में सड़क है ये पैन्ट किए हुए पेड़ है व्हाइट और गेरू कलर के आसपास बोहोत ही ग्रीनरी है यहाँ सुबह का टाइम है ।